यह एक रोड की फोटो है रोड की साइड पर एक दुकान लगी हुई है जो एक रेड़ी है।

जो सफेद रंग की है और कुछ छोटी छोटी डबियां रखी है कुछ पैकेट रखे हुए हैं।

मैंने लिखा है ऊपर और साइड में लिखा है नंदा ट्रेडर्स एक और बैनर है ऊपर लिखा है।

साइड मे एक कुर्सी है जिसके उपर एक तौलिया है।

जो सोने की रंग की है एक मुकुट पहना हुआ है जो बड़ा है।

यह एक बहोत बड़ी बिल्डिंग सी लग रही है।

साइड में एक चौक का रास्ता बना हुआ है।

और कई सारे कपड़े और भी टंगे हुए हैं कुछ जूते रखे हैं ज्यादातर जूतों का रंग सफेद है।

साइड में बहुत सारे लोग भागते हुए दिख रहे हैं जैसे कोई रह रेस कर रहे हो।

साइड में कुछ बच्चे बैठे हैं जो आपस में पंगे कर रहे है और सारे रेस्ट कर रहे है एक बूढ़ा आदमी खड़ा --

जो बिजली की तारें है ये बहोत पतली पतली तारें--

जो लाल रंग के कपड़े से कवर की हुई है बाहर को चार टेबल लगे हैं।

नीचे पीले रंग की नंबर प्लेट लगी है।

पेड़ लगे हुए है और छोटे मोटे हरे भरे --

यहां पर एक साइकिल है साइकिल जो है लाल रंग की है इसके--